साइड में एक और व्रुक्ष है और वो नीम का पेड़ है।

जहां पर लिखा हुआ है जीरो परसेंट इ_एम_आई उसके ऊपर ओनिडा ए_सी की दुकान है और उसके पास एक टाटा स्काई की डिश की दुकान है।

बैंक के बाहर तीन महिलाएं आई हुई है।

और वह खड़ा होकर अपनी तस्वीर खिंचवा रहा है।

गेट के पास एक छोटा सा गार्डन भी लग रहा है।

ऊपर एक काका साइकल लेके जा रहे हैं।